यह एक रासन का दुकान है।

यह एक खेत का फोटो दिखाया गया है जहाँ पे मकई को लगाए गए है और यहाँ पे --

हर तरह के टोटों मिलते है और टोटों गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी होती है क्यूकी वह कोई तरह के प्रदूषण नहीं फेलाते है और वह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ।